और आसपास में बहुत सारे बिल्डिंग हैं सामने हरे रंग के--

जमीन है बड़ा बड़े झाड़ लगे--

एक चॉकलेटी रंग के गोनी में लाल--

इसके पीछे एक सफेद रंग की बिल्डिंग हैं।